तस्वीर में मुझे फ्लावर पॉट्स भी दिखाई दे रही है।

हिंदी के ऊपर ओपन टाइम लिखा गया है।

तस्वीर क्लासरुम दिखाई दे रहे हैं।

क्लासरूम व्हाइट और येलो रंग के है।

मुझे इसमें दिखाई दे रही है।

कमरे के अंदर आईने जूते सोफे भी दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में मुझे एक खंभे दिखाई दे रहे हैं।

वे कॉपिंग और ब्लू से पेंट किया गया है।

पिच में एक इंसान गिटार बजा रहा है और एक का गाना गा रहे है माइक --

नदी के बगल में चार बोट्स भी देख सकते हैं।

मे मुझे बहोत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

गेट के पीछे मुझे पर्दे दिखाई मिल रही है।

इसमें मुझे ब्लू टीना बहुत सारे दिखाई मिल रहे है।

पेड़ भी दिखाया गया है। घर के बाहर स्टैचू भी दिखाई दे रही है।

उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे लाइट्स भी दिखाई दे रहे है।

उसके अंदर मुझे कुछ लोग भी दिखाई मिल रहे हैं।

इस साथ साथ मुझे एक टीचर भी दिख कही मिल रही है।

इंसान के पीछे मुझे कंस्ट्रक्शन किया हुआ दिखाई दे रहे हैं।

घर का रंग सफेद में है।

लोगों ने भारी चीज को एक साथ पकड़ा हुआ है।

बिल्डिंग सिर्फ रंग येलो ग्रीन ब्लू में पेंट किया गया है।

स्टेज को ब्ल्यू रेड वाइट से सजाया गया है।

इसमें मुझे कमरे दिखाई दे रहे है।

ये मुझे झुट्टी भी दे रहे--

तस्वीर में मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

के अंदर मुझे बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे चेयर दिखाई दे रही है।

चेयर के रंग ब्लैक और व्हाइट के है।

स्टूडियो को सफेद रंग में पेंट किया गया है।

इस तस्वीर में मुझे चार डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं।